ये फिश मार्केट है यहां पर मछलियां बेची जाती है यहां पे के रेट भी रखी गई है विभिन्न प्रकार के रंगों की।

कार पार्किंग है यहां पे बहुत सारी कार खड़ी हुई है टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर भी है और यहां पर मारुति सुजुकी भी हैं।

और एक आईना लगा हुआ है और एक आदमी बॉडी बना रहा है एक आदमी डंबल उठा रहा है और पीछे पंखा लगा हुआ है।

आदमी खड़ा है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और यह पहाड़ में खड़ा है जहां पर फोटो अच्छी आ रही है।

और यहां पर टाइल्स लगी गई है एक इंसान भी खड़ा है और पर्दे लगाए गए हैं बहुत अच्छा--

ये बच्चे खो-खो खेल रहे है और यहां पर पीछे पेड़ लगे है एक मेम लाल साड़ी पहन के खड़ी है बच्चों की ड्रेस का कलर हैं।

एक बीच है यहां पर नदी दी गई है ब्लू कलर की नाव है दो आदमी अपना फोटो खिंचवा रहे हैं सन है सनशाइन हो रहा है और बहुत अच्छा सीनरी टाइप बीयू आ रहा है।

और यहां से लोग जा रहे हैं यहां पर एच.डी.एफ.सी बैंक लिखा गया है ऊपर और चित्रकला बनाई गई है।

यह एक शादी हे जिसपे बहुत अच्छा काउंटर लगाया गया हे पीछे ग्रीन कलर की लाइटिंग से पेड़ मे जल्दी चमक आ रही हे और चच्चा जलेबी बना रहे हे यह लड़का पता नहीं चासनी मे रसगुल्ले डूब रह हे।

एक खिड़की है और कुछ तारे जा रही है यहां पे टाइल्स लगी हुई है बहोत सुंदर सी और अंदर एक कमरा और है एक इंसान --

एक कपड़े की दुकान है यहां पे बच्चों के कपड़े रखे गए हैं बहोत अच्छे ओर यहां पे मुझे एक रेड कलर का कपड़ा दिख रहा हे ओर नीचे बहोत सारे अच्छे-अच्छे गमछे टंगे हुए हैं ।

एक रोड बनायीं जा रही है तसला रखा गया है बहुत सारे मिस्त्री काम कर रहे है रेत डाली गई है सीमेंट डाली जा रही है यह पार्क है।